इस फोटो में यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है जहां पर लाइट जल रही है।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

इस इमेज में यहाँ पर एक चर्च दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक सलून दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

ऊपर पंखा भी नजर आ रहा है।

और कुछ लोग बाइक चलाते दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर गन्ना भी रखा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक नाव दिखाई दे रही है।

यहाँ आसमान में सूरज भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक बोर्ड लगा नजर आ रहा है।

ऊपर यहां पर बोर्ड रखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है।

नज़र आ रहा है यहां पर कुछ बच्चे कराटे प्रैक्टिस कर रहे हैं सामने --

इस इमेज में यहां पर एक जयपुर कुकिंग का बोर्ड लगा है यहां पर सत्तर बंद --

यहां पर ई रिक्शा भी सामने दिखाई दे रहा है।